एक रूम है उस रूम में एक पर्सन बैठा हुआ है उसके पैर में चोट लगी हुई है पैर में उसकी पट्टी बंधी हुई है पैर में मौजा पहन के रखा हुआ है।

यह एक मकान बन रहा है जहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं एक पटिए के ऊपर खड़ा है एक टंकी के ऊपर खड़ा हुआ है।

और पीछे लाइट जल रही है ऊपर डेरी का नाम लिखा हुआ है बगल में बेकरी है सामने मेन रोड है जहाँ पे सवारी ऑटो जा रहा है बाइक भी खड़ी हुई है स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यह एक स्कूल है जहाँ पे झंडा लहराने के लिए तैयारी की जा रही है कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं रंगोली बना रहे --

यहाँ एक प्ले ग्राउंड है जहां पर एक पर्सन फोन पे बात कर रहा है बगल मे पानी की बोतल भी रखी हुई है और उसने उसके दोनों पैर हाथ से पकड़े रखे हुए है।

नीचे फ्लोर है बहुत सारी पब्लिक डांस कर रही है जहाँ पर लेडिज अलग अलग कॉस्टयूम पेहने हुई है अलग-अलग रंग के।